और दरवाजे पर जो है वो फूलो की माला से दोनो ओर से दरवाजा सजाया गया है।

एक जिम की मशीन दिखाई दे रही है एक्सरसाइज करने की।

सामने पीछे दो घर दिखाई दे रहे हैं एक सफेद रंग का और एक हरे रंग का।

इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

रिंग्स है पीछे नेकलेस पड़े हैं।

सामने आसमान दिख रहा है जिसमें बादल छाए हुए हैं।

इसमें जो है वो काफी सारे टूल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर की है।

और ऊंची जो है वो रेलिंग लगी हुई है।

लड़के लड़कियां फोटो खिंचवा रहे हैं कुछ लोग घूम रहे हैं पीछे बहोत ही सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बाहर जो है वो दो लड़के उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बैठा हुआ आदमी नाव को चला रहा है।

और एक बाइक पर कुछ सामान रखा हुआ है।

और पीछे और भी जो है वो फ्रूट्स रखे हुए हैं।

और आज कुछ आदमी जो है वो अंदर खड़े हैं।